लाल कलर में पोस्टर लगे हुए हैं और यहां पास एक जन पेट्रोल भर रहा हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे खाने पीने की चीज और चम्मच रखी हुई दिखाई दे रही है बीच में बहोत सारा खाना रखा हुआ है।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे लोग--

सोफे में एक छोटा सा कपड़ा डला हुआ है दोनों साइड हाथ रखने के लिए मशीने रखी हुई है साथ में यहां पास बहुत सारे कैमरे --

साथ में यहां पर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है।

साथ में यहां पर बहोत सारी टाइल्स लगाई गई है।

यहां पास बहोत सारे पत्थर में कुछ अलग अलग रंग से--

यहां पास कुछ लोग बैठे हुए हैं एक इंसान मछली पकड़ रहा है।

यहां पास एक पेट्रोल पंप में अलग-अलग तरीके कांच के ग्लास लगाए गए हैं।

चारों ओर बहोत सारे कैमरे और लाइट लगे हुए है।

यहां पर बहोत सारे स्टेज बनाए गए हैं स्टेज को अच्छे तरीके से सजाया गया है चारों ओर पर्दे और लाइट्स लगाए गए हैं यहां पास कुर्सी--

साथ में यहां पर बहोत बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए है।

कुछ दुकान के अंदर सामने को जमाया गया है और यहां एक दुकान है दुकान के बाहर बहोत सारा पोस्टर लगा हुआ है।

पोस्टर लगाया जा रहा है। यहां पर लकड़ी के बहोत सारे स्टैंड रखे हुए हैं। साथ में आपस एक बहोत बड़ा कांच का ग्लास लगा हुआ है।